जमीन है दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं।

यहाँ पर सा शादी का फ़ंक्शन चल रहा है। नीले कलर के परदे लग रखे हैं। बीच में पीले फूल लग रखे हैं और सफेद फूल भी लग रखे हैं।

तीन चार गेट बन रखे हैं और छोटी-छोटी लडियां भी लग लंबी-लंबी लड़ियां लगा रखी हैं। हरे कलर की लड़ियां लग रखी हैं और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लाल कलर की कालीन बिछा --